यहाँ मुझे एक ए.टी.एम. दिखाई दे रहा है।

और अपने लाइन के लिए वेट कर रहे हैं।

यहां मुझे एक कॉमर्स क्लास की बोर्ड दिखाई दे रही है।

और लोग मशीनों की सहायता से यहां कार्य कर रहे हैं।

और साइड में पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ हमें एक कटिंग की दुकान दिखाई दे रही है।

एक रिक्शे पे सामान को लाने और ले जाने का कार्य किया जा रहा है।

यहां एक बहत बड़ा जंगल जैसा ए एरिया दिखाई दे रहा है।

खाने का फव्वारा बह रहा है जहाँ एक लड़के बैठ अपना फोटो शूट कर रहे हैं जो की वाटर पौंड को --

एक आदमी बेड पे लेटे हुए हैं और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हुए दिखाई दे रहे है आदमी आंख बंद कर --

बेड पे लेटे हुए है और डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे है जहां एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।

जो की दिखने में बहत ही आकर्षण दिख रहा है।

आजू बाजू दो शोरूम दिखाई दे रहे है जिसमें --